इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर स्टेज पर कुछ बच्चे ऊं दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक बड़ा सा लक्ष्य इंटरनेशनल अकैडमी लिखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक जे_सी_बी मशीन दिखाई दे रही है जो गड्ढा खोदने का काम करती नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ कपड़े के पैकेटस दिखाई दे रहे हैं जो रंग-रंग-बिरंगे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर कुछ टेंपो ट्रक और मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर भी बी_सी_एल लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर काफी सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर छाया के लिए हरा कपड़ा भी बांधा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक गैलरी दिखाई दे रही है जहां पर साइड में कुछ ब्लैक रंग की कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और काउंटर पर देखिएगा कुछ लोग इन्क्वायरी करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखियेगा यहां पर एक बड़ासा हॉल दिखाई दे रहा हैं जहां पर बैठने के ढेर सारी कुर्सियां नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है जहां पर कई सारे गाड़ियां चलती नजर आ रही है और पास में कुछ इमारतें भी दिखाई दे रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर देखिएगा कुछ लाइटें जलती दिख रही है और एक प्यारा सा झूमर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर भगवानों की कई सारी मूर्तियां नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कही सारे लड़के लोग क्रिकेट खेलते नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कई सारी मोटर साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर सब्जी वालों में कुछ लोग आलू प्याज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जहां पर सामने गमलों मे कुछ शो प्लांट्स लगे नज़र आ रहे है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर देखिएगा कई सारे पेड़ और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है और लैपटॉप लैपटॉप पर एक आदमी काम करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां एक बड़ा सा स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर दो तीन लड़के यहां पर खड़े हो कर गिटार बजाते नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और एक आदमी इसमें फूलों का डेकोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक टेबल दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा एक लड़का नीचे कुछ ढूंढता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा सामने एक बड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे सोफे टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज़ में देखिएगा सामने यहां पर कुछ स्टूडेंट बैठे दिखाई दे रहे है और स्टेज पर देखिएगा रंग बिरंगे गुब्बारे नज़र आ रहे हैं।